जमीन रेट से ढकी हुई दिख रही है हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

थिएटर के बगल में हीरो शोरूम दिखाई दे रहा है।

विभिन्न प्रकार के समान प्रदर्शित किया गया है।

सामने की तरफ एक पीले रंग की ऑटो दिख रही है।

यहां ए_टी_एम दिखा दिख रहा है।

बैनर में वी केयर योर फैब्रिक्स टैग लाइन भी लिखा गया है।

स्टेशन के सामने एक सड़क है और सड़क के किनारे कुछ वाहन पार्क किया गया दिखाई दे रहा है।

कई लोग फर्श पर बैठे हुए है और उनके सामने छोटे बर्तन रखा गया है।

नारंगी या पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं।

यहां एक नाई की दुकान के अंदर का दृश्य दिखाई दे रहा है।

दो काले रंग के पक्षी तैर रहे है।

डोर मे विभिन्न प्रकार के समान करीने से सेल्फोन डिस्प्ले पर रखा हुआ दिख रहा है।

ये ग्राहक खरीदते हुए दिख रहे है छत पर कई लाइट्स लगे हुए दिख रहे है।